और उसके सामान है जस्ट लाइक सीट ।

जहां पे लोग अपना लंच --

उसकी फोटो उसने कुछ क्राफ्ट का बनाया हुआ है उसकी फोटो है।

और बीच में से झरना बह रहा है।

सेम कलर सेम साइज के सात स्ट्रक्चर बने हुए हैं।

ये फोटो अ कोई पार्टी प्लॉट की फोटो है।